कमरे की दीवारों में अलग-अलग कलर का टेक्सचर किया हुआ है।

इमेज में जिम नज़र आ रहा है।

पे हियर लिखा हुआ है।

इमेज में बहोत सारी लेडीज हैं।

बाउंड्री वाल पर रेलिंग्स लगी हुई नज़र आ रही है।

रिक्शे के पास एक अंकल खड़े फोटो खिंचा रहे है।

टीचर बच्चो को डांस स्टेप्स सीखा रही है।

एक लेडीज जमीन पर बैठी हुई हैं।

जमीन पर कुछ डम्बल्स रखे हुए हैं।

एक येलो और वाइट कलर का कैलेंडर टंगा हुआ है।